जिसके पास दो लड़के फोटो खिंचवा रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे--

एक बहोत बड़ी चीज़ है।

यहां पर एक बहोत बड़ा होटल है और--

एक बहुत बड़ी चीज है और--